घर दिखाई दे रहा है चावल गिलास चेयर टेबल दिखाई दे रही है।

बास दिखाई दे रहा है असमान दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है अनेक प्रकार के सब्जी दिखाई दे रहा है बाइक दिखाई दे रहा है।

ये एक गाड़ी का एजेंसी दिखाई दे रहा है यहाँ गाड़ी का सर्विसिंग करवाये जाते है।

यह एक स्कूल है यहाँ पड़ने के लिए आते है शिक्षा लेने के लिए यहाँ एक दरवाजा दिखाई दे रहा है।

यह एक कार का एंजेंसी है यह एक बनारस का जगह दिखाई दे रहा है कार कार कार लोग को गार्ल बड़े बड़े गाड़ी लोग को खड़े किया जाता है| पेड़ पेड़ पौधे दिखाई देरा है घर दिखाई देरा है कार दिखाई देरा है |

पुतला है मछली का मछली का मोर का और पुतला पुतला दिखाई दे रहा है घर दिख रहे है।